और जो की बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है।

इस इमेज के अंदर मुझको एक--

और यहाँ पर एक चेयर भी रखी हुई है ये बहोत मेकअप की समान भी रखा हुआ है ये एक मॉल है।

और हम यहाँ पर जो मछली बेच रहे है और यहाँ पर अलग-अलग टाइप की मछलियाँ रखी हुई है।

और यहाँ पर एक पिलर भी है।

इस इमेज के अंदर मुझको एक किला नज़र आ रहा है।

और उसे जो इधर खिड़की है वो ब्लैक कलर की है। और यहाँ--

और एक तरफ हरियाली है जहाँ पर बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

एक तो इसमें रेड है और ये एक वाइट है।

और एक ईस्क्वायर वाला पिलो भी रखा हुआ है और यहाँ पर दो सेंद्रियाँ लटकी हुईं हैं।

हर साइज के पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए है बहुत सारे यहाँ पे पेड़ भी है और यहाँ पर बहुत सारे पत्थर भी हैं।

इमेज के अंदर मुझको एक किराने की दुकान नज़र आ रही है।